ये एक छोटा सा गार्डन है और यहां पे अंधेरा छाया है और यहां लाइट ऑन है हम यहां देख सकते है हरे पड़े भी हैं।

ब्लैक शूज पहने हैं और यहां पे टीचर्स बच्चों के स्वागत पे हैं।

हम यहां देख सकते हैं बिजली का खंबा जो बहोत सारे वायर्स लगे हैं और यहां पे हम शॉपिंग कॉम्पलेक्स भी देख सकते हैं और हम आसमान भी देख सकते हैं।

और यहां पे एक और पिंक कलर का बैग और काले रंग का बैग भी है।

बहुत बड़े बड़े हरे पेड़ों को देखते हैं और यहां पे हम कुछ गाड़ियों को भी देखते हैं और यहां पे हरे घास भी है छोटे छोटे।

यहाँ पे हम देख सकते है बहोत सारे अलग -अलग रंग के टी- शर्ट्स है और यहाँ पे बहोत सारे लाइट्स है और यहाँ पे हम पोस्टर्स भी देख सकते है और यहाँ पे बहोत सारे हैंगर्स भी हैं।

ये एक साड़ियों की दुकान है और यहां पे हम देख सकते हैं बहोत सारे चेयर्स है और यहां पे इनके पास बहोत सारे लाइट्स भी देख सकते हैं और यहां पे हम कु--

यहां पे हम हरे हरे पेड़ देख सकते हैं और यहां पे कुछ लोग जा रहे हैं।

और हम यहां पे बोर्ड देख सकते हैं जो कि लिखा है पॉजिटिव हेल्थ जोन ।

पेड़ है और यहां पे हम देख सकते हैं गाड़ियों को भी और यहां पे एक--

हम यहां पे सड़क देख सकते हैं और बहोत सारे लोग गाड़ियों पे बैठे हैं और हम यहां पे स्ट्रीट लाइट भी देख सकते हैं और यहां पे हम आसमान को भी देख सकते हैं।